और यहाँ पे एक नीम का पेड़ है उसके ऊपर आप को सीढ़ी चढ़ने की है वो भी मिल रही है और आसमान भी काफी अच्छा दिख रहा है।

वहाँ पर आप कुछ टेंट लगा सफेद सफेद टेंट दिख रहा है जहाँ पे जो ये लड़कियां हैं जो काफी अच्छी- हैं पर डांस करती हुई दिखाई रही।

यहाँ पे चट्टान काफी अच्छी चट्टान है ये नीचे हरे उम्म पेड़-पौधे हैं।

उसके पीछे आपको यहाँ पे जो सफेद दीवाल है काफी अच्छी सफेद दीवाल दिख रही है और जो खिड़की है काफी अच्छी खिड़की है। उसमे से आपको यहां पर लाइटिंग आता हुआ दिख रहा है।

आसमान भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है जो खम्भा है खम्भा भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है।